और यहाँ पर एक सफेद कार खड़ी है।

पीछे हमें एक बाउंड्री नजर आ रही है।

इस तस्वीर में ट्रेन की पटरियाँ दिखाई दे रही हैं।

नीचे काले और सफेद टाइल्स लगे हैं।

कुछ कुर्सिया और बेंच दिखाई दे रही हैं।

एक पेड़ के तने को बहुत अच्छा सजाया गया है।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

कुछ टेबल कुर्सियाँ नजर आ रही हैं।

एक आदमी है जिसने लाल और काली लाइनिंग वाली शर्ट पहनी है।

ऊपर हमें तार नजर आ रहे हैं।

काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

और कुछ औरतें दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में एक लड़का दिखाई दे रहा है।

कुछ हमें पिलर और तार नजर आ रहे हैं।

कुछ नाव हमें दिखाई दे रही है।

काफी सारे बंगले बने हुए हैं कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं गीली मिट्टी दिखाई दे रही है।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

काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं आसमान में सितारे दिख रहे हैं।

कुरुस की बहुत सारी खिड़कियाँ नजर आ रही हैं।

सभी बच्चो ने सफेद कोट पहना है।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

एक कार खड़ी है जिसका रंग सफेद है।

एक सफेद कार नजर आ रही है।

इस चित्र में एक हुक्का दिख रहा है।

इस चित्र में एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

कुछ सुखी मट्टी दिखाई दे रही हे ।

इस चित्र में एक घर दिखाई दे रहा है।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

जिसका नाम औषधि केंद्र है।

आधार कार्ड का एक आदमी खड़ा है जिसने पीली शर्ट पहनी है।

जिन पर सफेद और पीला कपड़ा लगा है।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

बु इस जगह को टाइल्स से बनाया गया है।